दूर में शीशे के पीछे मुझे बहोत सारा लॉक नजर आ रहा है।

यहां बरा सा एक दीवार जैसे दिख रहे जिसमें लाल और सफेद रंग लगाया हुआ है।

इस गैरेज के छत जो टीना से बना हुआ है।

सामने की ब्लू गाड़ी को पूरा खराब हुआ दिखाई दे रहा है।

पर तरह तरह की किताबें रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

में मुझे बहुत सारा गाड़ियां भी पार्क करते हुए दिख रहे हैं ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है।

गारियों के पीछे मुझे बहोत सारे स्ट्रीट लाइट्स भी दिखाई दे रहे--

में एक छोटा सा घर है।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

दोनों लोग ने बैग बूके हैं।

इस तस्वीर की दीवारों पर क्रीम कलर लगाया हुआ है।

तस्वीर रूम के अंदर से लिया हुआ है।

इस रूम की दीवारों पर ब्लू कलर लगाया हुआ है।

बिल्डिंग के आगे मुझे काला रंग का एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ मुझे खुला जगह दिखाई दे रहा है जगह पर कुछ छोटे छोटे घास भी दिखाई दे रहा है।

घर का रंग व्हाइट और ग्रे है सामने मुझे बहुत सारा घास फूस दिख रहा है।

इस कमरे के पर टाइल्स लगाया हुआ है।

यहां मुझे कुछ कार्टून भी दिखाई दे रहा है।

सामने में मुझे बहुत सारा बाइक और स्कूटी भी पार्क किया दिखाई दे रहा है।

दो ओर एक आदमी दिखायी दे रहा है।

हाथी के आगे पट में होली लगाया हुआ है लाल रंग का।

हाथी के ऊपर मुझे एक आदमी भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।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

यह वरांदा के फ्लोर पर सफेद रंग की टाइल्स लगाया हुआ है।

सामने में मुझे एक काउंटर जगह दिखाई दे रहा है।

सामने में कुछ स्कूटी बाइक भी पार्क किया दिख रहे है।

इस कमरा में मुझे बड़ा सा एक बिस्तर भी दिखाई दे रहा है।

इस कमरे में पर्दा भी टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

योगा मैट का रंग ब्लू येलो पिंक --

यहां मुझे बहुत सारा शेल्व्स नजर आ रहा है सारे शेल्व्स पर तरह तरह की किताबें रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस कमरा पर दूसरे साइड में मुझे पर्दा भी टांगा हुआ दिखाई दे रा है।

जो सामने में दो कुर्सी भी दिखाई दे रहा है काला रंग का।

वाइट कलर का पैंट पहन रखा है।

पर मुझे पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं जिसमें स्टेट बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ है।

बरन्दा पर लाइन से फ्लावर --

यही दूर में मुझे एक औरत भी दिखाई दे रहा हैं जिसने ऑरेंज कलर की कुर्ती पहना है।

कोरिदोर मे सफेद टाइल्स लगाया हुआ है।